और एक सिल्वर और गोल्डन मिलाकर है अच्छा लग रहा है देखने में --

जगह है। जिस पर यहां पर सीढ़िया रखा हुआ है और व्हाइट कलर का कलर किया गया है और रेड कलर का।

और व्हाइट कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और बेल्ट लगाए हुए हैं ब्लैक और येलो कलर का।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने तीन बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर डांस --

का यहां पर सामने एक आदमी फोटो खींचा रहा है। ऐसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है।